और ये देखने में काफी अच्छा भी है।

किसान लोग मिलकर अपना काम करते हैं और यहां का जो पीछे का पहाड़ है कितना ज्यादा सुंदर दिख रहा है।